सब तरफ जो की हमें साफ दिखाई दे रहा है।

और बच्चों के लिए गाड़ी भी है खेलने के लिए और रेड कलर की चेयर है जिसपे बहोत लोग बैठे हुए है।

गणपति कैटर्स का और नीचे उसमें सारे सामान रखे हुए है।

और अ छोटे - छोटे सामान है घरेलु सामान अंदर भी उसके चूल्है है करोट है छोटा - छोटा जो की हम देख पा रहै है लाइट्स जल रही है।

और जमीन दिखाई दे रहा है उसमे मिट्टी हम देख पा रहे है कहीं छोटा छोटा घास है जो देख पा रहे है एक बाइक खड़ी है।

और वह बहोत सारे पेड़ बड़े-बड़े दिखाई दे रहे है आसमान भी साफ दिख रहा है।

लास्ट बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपे बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए है काफी वायर गया हुआ है और ऊपर आसमान हमें साफ दिखाई दे रहा है।

ऊपर के फ्लोर पर सारे कपड़े दिखाई दे रहे है निचे के फ्लोर पर जूता चप्पल सैंडल भी है जिन्हे हम देख पा रहे है येलो कलर की कुर्सी रखी हुई है बैठने के लिए भी टेबल लाइट जल--

हम देख पा रहे है ऊपर आसमान साफ़ दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ ढेर सारे बड़े-बड़े पेड़ है जो कि दिखाई दे रहा है।

और गेट खुला हुआ है अंदर बहोत बड़ा ही उसका मैदान है ऊपर आसमान एकदम साफ़ दिखा दे रहा है।

और वोडाफोन और एयरटेल का भी पोस्ट लगा हुआ है।